ये तस्वीर जो है ये एक बुक की दुकान की है जहाँ पर बुकें मिलती हैं।

एक यहां से ये वैन खड़ी है कार खड़ी है और --

ये तस्वीर जो एक योगा की है। जहां पर ये लोग योग कर रहे हैं और अ ये काफी बड़ा फील्ड है।